और उसके साइड में बी_ए बी_बी_ए बी_कॉम पी_यू_सी --

और टब बाल्टी भी रखी हुई है और ऊपर की ओर बहोत सारे कमरे भी नजर आ रहे हैं।

और बहोत सारे खाट और पलंग भी नजर आ रहे हैं उनके ऊपर पटिए लगे हुए हैं।

एक पोर्शन छोटा है दूसरा स्विमिंग पूल का पोर्शन बहोत बड़ा है।

यह देखने में बगला जैसा लग रहा है जो की उसकी चोंच बहोत ही लंबी है।

यहां पर बहोत से बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।